यहां पर हरे भरे पेड़ भी हैं टोकरी में फल--

यहां पर ऐसा दिख रहा है जैसे ये--

और यहां पर जीने से भी है जिस पर चढ़कर हम दुकान में जा सके हैं मशीन भी है अंदर--

यहाँ पर संदली भी है जिस पर ये चढ़कर जा रहे हैं दो सरिए खडे हुए हैं एक--

स्काई ब्लू कलर के गेट और विंडो हैं और सामने एक --

कुर्सियां भी हैं और सारे में--

यहां पर एक सोफा है एक कुर्सी रखी हुई है।

और यहां पर साइड में भी बहुत अच्छे अच्छे सजावट हो रही हैं।

यहां पर एक बड़ा सा होटल सा भी है और--

और यहां पर एक ऐसा है जैसे अंदर जाने का रूम हो।

यहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिख रहा है अटलाया स्टोन ।

लोहे के डब्बे भी पेंट्स के प्लास्टिक के बाल्टी सी भी हैं।

और यहां पर एक मेज के ऊपर केक भी रखा हुआ है।

और साइड में जो औरत खड़ी है वो गिफ्ट भी ले रही है।

ये एक दवाइयों की दुकान है।

जिस पर लिखा हुआ है मोहम्मद इस्माइल छिदा चाट वाला।

पर सात औरतें खड़ी हुई है एक--

ऊपर एक लाइट है लाइट अ लाइट और बिल्डिंग पर येलो --

यहां पर बहुत सारे कैंडल्स भी हैं।

यहां पे नीचे नीला लाल पीला और सफेद कोन से भी रखे हुए हैं।

और ऊपर एक टहनी भी है।

शीशे भी शी कांच के गेट भी है।